पेड़ दिखत हे घर भी घर भी दिखत हे मंदिर भी दिखत हे फोटो खिंचत हे।

ओदे लड़की मन बईठ के खाथे टेबल कुर्सी मा बईठ के ओदे पा पैक करत भी हे लाइट भी लगे हे पँखा भी लगे हे ए. सी. लगे हे।

ए हा मार्केट हे मार्केट म मछली हे मछली हे चिंगरी हे झिंगा हे अव मछली मन ला काट काट के महिला ह बचत जाते हे एदे --